यह चित्र एक बड़े सारे ग्राउंड का दिखाई दे रहा है।

नाहार सॉन्स लिखा और बाहर बहुत सारी पार्किंग है बाइका खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं।

ये चित्र एक दुकान का दिखाई दे रहा है जहां पे बड़ी सारी लकड़ी की अनमारी में अलग-अलग खानों में--

पार्क में घास और छोटे बड़े हरे पैड पौधे दिखाई दे रहे हैं।

ये चित्र एक बड़े से घर का दिखाई दे रहा है।

जो कि पी हरा और क्रीम कलर का पुता हुआ है।

और टेबल पर पानी के बोटल और दो डिस्पोजल गिलास दिख रहे --

कैबिन लकड़ी की हे यहां पे बहुत सारे फाइल पानी की बोट --

और ब्लैक कलर की चेयर पर लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो कि फूलों और जो कि गुब्बारों से सजा है गुब्बारे सफेद और लाल कलर के गेट पे सजे हुए हैं।

यह चित्र एक रोड पे लगे मार्केट का दिख रहा है।

लोग यहां फोटो खींचते वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं।

ये चित्र वी_आई_पी रोड के साइड में एक पार्क का है।

बड़े-बड़े हरे पेड़ जमीन पर घास दिखाई दे रही--

नेचुरल आइस क्रीम लिखा है हंड्रेड परसेंट नेचुरल मुंबई --

उसके ऊपर सफेद कलर का कोई मीनार ऐसा बना है आस पास यहां पे घास और बड़े छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

ये चित्र एक स्टेज का दिखाई दे रहा है जहां की जमीन--

बिजली के बहुत सारे खंबे उन पर जाते हुए तार दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर जीनें ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं।

बड़ा सारा तालाब है आस पास हरे पेड़ पौधे दिख रहे--

जीना ऊपर जाता हुआ रास्ता है ऊपर एक स्टेचू खड़ा है।

झूमर जो कि छतरी की तरह दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे बहुत सारे कैरेट के अंदर अलग-अलग फल हैं जैसे कि सेब केले मौसंबी--

बहुत से लोग मोटर बाइक और गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

अंदर एक सफेद गाड़ी खड़ी है जिस पे--

स्टेज फूलों से सजा हुआ है फूल बहुत से कलर के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे लोग पेट्रोल डलवाते हुए दिख रहे हैं।

नीचे थोड़ा पानी दिख रहा है ये जमीन घास दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति बैठा है जो सफेद शर्ट ब्लैक पैंट पहना हुआ स्टूल पर बैठा हुआ ।

यहयह चित्र में राजा भोज हवाई हड्डा भोपाल लिखा हुआ है।

पीछे की ओर एक कत्थई दरवाजा है यहाँ की दीवारें गुलाबी कलर की दिख रही --

दीवार पर भी यहां पर पेड़-पौधे लटके हुए --